और यहां पर बहोत सारा पानी भी स्कूल में भरा हुआ है।

और यहां पर कुछ पैकेट भी फर्श पर पड़े हुए--

यहां पर और भी कई सामान रखे--

ये तस्वीर एक ऑफिस की है इसमें बहुत बड़ा टेबल और बहुत सारी कुर्सियां र--

जिस पर गद्दा बिछाया गया है और दीवार पर एक सीढ़ी भी लगी हुई दिखाई दे रही--

इसमें बहोत सारी नई लाल रंग की कुर्सियां रखी हुई है।

ये इमारत काफी प्राचीन लग रही है।

लगा हुआ है और इसका शटर बंद है इसकी दीवारें हल्के ब्राउन कलर की है।

दुकान काफी बड़ी है इसमें बहुत सारे शीशे--

लगे हुए है काफी लाइटें भी जल रही--

एक ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रही है बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां एक बड़ा टेंपु दिख रहा है।

इसमें बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं।

यहां एक बोर्ड लगा हुआ है।

यहां बहोत सारा खाना रखा हुआ है और लाइटो से सजावट करी गई है।

खड़ा हुआ है दुकान के बाहर--

ये तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है इसमें कुछ लोग बैठ कर--